इस फोटो में एक हाईवे है हाईवे पे बड़े बड़े लाइट लगे हुए हैं वहां पे--

और वहां पे बहुत सारे बाइक लगे हुए हैं मॉल पे पोस्टर लगा हुआ पोस्टर में जो हीरो है।

एक ट्रक है जिसमें चार चक्का लगा हुआ है। ट्रक पर बहुत सारा सामान लोड है।

गोदाम में एक आदमी गोला ले जा रहा है।

और दो चार आदमी मास्क लगा के खड़े हैं जो घोड़ा से सामान उतरवा रहें हैं।

लड़कीनृ नृत्य कर रही है एक पीला और हरा कलर का कपड़ा पहनी हुई है लहंगा चोली--

पानी बहुत गंदा है कीचड़ जैसा है हरा कलर का और फर्श पे बहोत सारे पत्ती--

सीमेंट बालू छर इत्यादि है बहुत सारे मजदूर उसको सही कर रहे हैं।

इसमें एक घर है वहां पे बहुत सारे चेयर लगे हुए हैं।

ये किसी फंक्शन का डेकोरेशन किया गया है जिसमें लाल कलर का फूल उजला कलर का फूल --

पैड विजिटिंग कार्ड और अन्य वस्तुओं का प्रिंटिंग भी होता है।

यहाँ एक दुकान है जिसमें टेबल लगा हुआ है बाल्टी रखा हुआ है।

एक स्टूडियो है इस स्टूडियो का नाम शर्मा स्टूडियो है इसपे लिखा हुआ है डिजिटल कलर ।

सामने खिलौना का एक दुकान है वहां पे एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है।

यहां एक भीगा हुआ रोड है रोड के बगल में छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं।

पीछे गेंदा का फूल है जो पीला कलर का है कमल का फूल गुलाबी कलर का --

कोई फंक्शन चल रहा है जिसमें बहुत सारे दर्शक हैं बहुत सारे नृत्य करने वाले हैं बहुत सारे ढोल मल ये सब बजा रहे हैं।

आर सी खिड़की है बहुत सारे खिड़की में शीशा लगा हुआ है ब्लू कलर का बिल्डिंग पे लिखा हुआ--